इसके बाहर मैं अंदर जाते हुए एक औरत को देख पा रहा हूं।

है यह मूर्ति एक कटोरी टाइप लग रही है।

जो बहोत ही अच्छा लग रहा है इसके ऊपर सफेद चादर और नीले रंग के कुशन हैं और ऊपर एक पर्स भी है।

इस पिक्चर में मुझे बहोत सी फूलों की मालाए दिख रही है--

नीले काले रंग के यह लोग एक--

मुझे इस पिक्चर में एक होटल दिखाई दे रहा है।